योगा करा रहे कोच सब को योगा करा रहे है।

का जो इंजीनियर है काफी अच्छा डिजाईन किया हुआ है। मिस्त्री वगैरह जो भी है बनवाने बहुत अच्छा व्हाइट कलर का कलर किया हुआ। पूरा इकदम प्लेन व्हाइट । ये पूटी का कराया हुआ है। बहुत अच्छा दिख रहा है।